ए दुकान में बहुत ही स्टाइल के कपड़े भी मिल --

यह एक दुकान का फोटो दिखाया गया है। यह दुकान में बहुत सारे खाने के सामान मिलते हैं जैसे चावल हल्दी तेल।

बहुत कम दामों में यहाँ --

बहुत अच्छा-सा हमें इमेज दिखाया गया है ।

यहाँ बहुत आदमी सब्जी लेने के लिए आते हैं और य --